जो काले कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है और जींस पहना हुआ है।

उसके सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।

बाइक बीस रुपये वॉश होती है ।

ख़ूबसूरत सा खेत दिख रहा है।

ये एक गार्डन दिख रहा है यहां पर घासें लगी हुई हैं और घास पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

ये एक मस्जिद दिख रही है।

ये एक प्लेग्राउंड नजर आ रहा है।

जो ब्लू कलर की शर्ट पहना है।

पानी में बतखें उड़ रही हैं।

यहां पर मंदिर दिख रहा है।

ये कोई किला दिख रहा है जो कि--

यहां पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह कोई स्कूल के फंक्शन का सीन दिख रहा है।

लाल और काले कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

यह कोई चर्च के बाहर का सीन दिख रहा है।

जहां पर जीजस बने हुए हैं।

जो कि सिस्टामेटिक जमी हुई है।

जोकि व्हाइट कलर के ड्रेस में है।

जहां पर घासें लगी हुई हैं।

ये कोई ढाबे का सीन दिख रहा है।

यहां पर लिखा हुआ है सुखदेव पैलेस --